यह लड़का पार्क में गेंदा फूल के पास--

इन्हें बेचा जा रहा है मछली का दुकान हैं।

लोग आये हुए हैं जो किसी चीज का मीटिंग या फिर प्रशिक्षण दे रहे हैं।

जो कहीं फोन में बात कर रहे हैं और फोटो खिचवाए हुए हैं घर के अपने सामने बैठकर।

ये किसी का घर बन रहा है ईंट का बुनाई हो रहा है।